इस आदमी ने ब्लू कलर की जैकेट और वाइट कलर की शर्ट पेहेन--

ये एक पहाड़ी है जिसमे निचे लाइट ग्रीन कलर के पौधे है और पहाड़ी के ऊपर डार्क ग्रीन के पौधे है।

यह एक कस्टमर सर्विस प्वाइंट है एस.बी.आई का जिसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ पोस्टर्स --

ये एक वेजिटेबल फूड शॉप हैं इसमें एक आदमी खड़ा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी है और यहाँ पर गोभी गाजर लहसून प्याज बैंगन केले --